यहां पर मुझे बहोत सारी मशीन दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे गुब्बारों की सजावट दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे एक शीशा दिखाई दे रहा है।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

यहां पर मुझे एक शेल्फ दिखाई दे रहा है।

यहां पर मुझे चार वाहन दिखाई दे रहे हैं।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

यहां पर मुझे दो पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर मुझे झुकेही स्टेशन दिखाई दे रहा है।

यहां पर मुझे एक पंडाल दिखाई दे रहा है।

यहां पर मुझे एक और लेदर शॉप दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे दो दुकान दिखाई दे रही हैं।

यहां पर मुझे एक पोस्टर दिखाई दे रहा है।

यहां पर मुझे एक प्लेट दिखाई दे रहीं हैं।

यहां पर मुझे बहोत सारे बॉक्स दिखाई दे रहे है।